और यहां डस्टबिन रखे हुए हैं बहोत सारे यहां पे मा पीलिया लगाए गए ऊपर यहां पे--

ये एक बड़ी सी दुकान है यहां पे बहुत सारे हैंड वॉश है।